इसमें एक टेबल है इसके बाद बहुत सारा डेस्क और बंच भी है।

उधर उष तरफ जंगल के आकार का बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है।

वहाँ नीचे जमीन पर बहुत सारे घांस है पेड़-पौधे भी है।

यह एक छोटी-सी दुकान दिख रही है।

पीछे एक बहुत बड़ा पंखा टाइप का कुछ दिख रहा है घर भी है |

ऐसा लग रहा है ये एक छत है छत पर बहुत सारे लोग है और योगा कर रहे है।

यहाँ पर एक दुर्गा देवी मंदिर दिख रहा है बगल में रोड है दूसरी तरफ बहुत सारी दुकाने है।